आपका इस फोटोस वीडियो के माध्यम से--

आपका इस डेकोरेशन को लेके क्या मानना है आप जरा इसमें देखके जान के एंड सोच परत के बताइए।

जैसा की मैं देख पा रहा हूं यहां पे और भी काफी सारी--

आपको इनको लेके क्या मानना है आप जरा इसे--

जैसा कि मैं यहां देख पा रहा हूं और भी काफी पारिवारिक माहौल एंड इत्यादि भी इसमें काफी चीजे--

जिम के अंदर भी तथा अन्य प्रकार की एक्टिविटीज करते हुए--

आप भी जरा इसे देखिए और समझने की--

जैसे कि मैं भी इस चीज को दृश्य देखकर समझ पा रहा हूं शायद आपको भी यहां दृश्य देखके समझ आ रहा होगा।

इस फोटो के माध्यम से दिखाई देते हुए नजर आ रहे हैं।

ऐसा कि आप को भी दिख रहा होगा देख के समझिए।

की यहां पे क्या सीन होना चाह रहा है।

और देख भी पा रहे होंगे यहाँ पे अच्छी-अच्छी इमेज ए और अन्य प्रकार की चीजें भी --

यहां पे काफी सारे डिजाइनिंग एंड घर के डेकोरेशन जो झरने जैसे पहाड़ के भी यहां पे--

और समझ रहे होंगे कि यहां इमेज किस चीज क्या दर्शना चाह रहा है।